दृश्य एक दुकान के बाहर का है जहां पे लिखा हुआ है महालक्ष्मी फ्रुट्स --

यहां पे बहोत सारा ऑटो लगा हुआ है।

फूलों से सजावट की हुई है और नीचे कुछ कुछ गोल्डेन रंग के डिजाइन भी बने हुए।

यहां पे लिखा हुआ है पंचवटी प्लाजा ।

यहां पे लिखा हुआ है हेयर एक्सपर्ट प्रोफेशनल सलून।

यह दृश्य एक रूम का है जिसका रंग क्रीम रंग का है और इसका सीलिंग सफेद रंग का है।

और उस साइड बाउंड्री किया हुआ है जो कि ग्रीन और लाइट ग्रीन रंग का है।

यह दृश्य एक स्टेज का है जहां पे एक दुल्हन बैठी हुई है।

और उसके ऊपर एंटीना लगा हुआ है यहां पे एक छोटा सा पोस्टर लगा हुआ है।

यह दृश्य एक साइकल के दुकान का है।

यहां दो टीचर भी है जो की साड़ी पहनी हुई है।

यह दृश्य एक स्कूल के कॉरिडोर का है।

जिसका रंग क्रीम है और नीचे लाल है।

यह दृश्य एक शॉप का है जहां पे बहोत सारा स्लैप बना हुआ है।